यह एक बहोत बड़ा पुल है।

पार्किंग में बहोत अच्छा रोड बनाया गया है।

और बाहर में बहोत हरा भरा पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और पानी भी बहुत सारे जगह है।

काउंटर में शीशा लगाया हुआ है उसमें सामान रखा हुआ है।

बगल में बहोत सारा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहां पे स्कूटी भी है और बाइक भी है।

यहाँ पे काफी अलमारियाँ है।